एक बलफ बर रहा है उसके पीछे पर्दा है सभी आदमी नाच कर रहे--

नदी है नदी के एक साइड हरा भरा यहां पे फूल भी है गाछी वृक्ष है।

एक रूम है यहां पे लगता है की अच्छा मॉल बन रहा है उस तरह से है यहां पे बहुत सारा तार है पाइप है।

और एक आदमी है जो वाइट कलर का शर्ट पहना है। एक आदमी और खड़ा है जो शर्ट पहना है टकला हुआ है।

और ऊपर जाने-आने के लिए सीढ़ी भी है यहां पे। मिरर फूटा है। पेटीएम कैश स्कैनर है।

उसके नीच्चा लिखा है तीन सौ चार एक नचाने वाला भी है।

और बीच में हरा है और वो दूसरे रंग का है और वो चर रहा है।

गाना शूटिंग कर रहे हैं दो आदमी है दोनों हाथ--

उसके ऊपर है एक हरा पेर है और एक घर है घर के ऊपर अति है बहुते सारा--

इंडिया पी_वी_टी ट्रक है ट्रक के ऊपर दुगो है यहां पे सेनीटाइजर मशीन है हरा पेड़ पौधा उसके पीछे भी दो मशीन है।

हीरो साई हीरो जाया हीरो यह हीरो एजेंसी है यहां पे बाइक है।